का फोटो है जो की रात का टाइम है।

एक चबूतरा में एक रेड टी शर्ट पहन के आदमी बैठा हुआ है।

आगे का हिस्सा पूरा खाली है।

दिन का टाइम है यहां पर एच पी का पेट्रोल पंप है ।

चार लड़कियां दिखाई दे रही हैं चारों ने कत्थक वाली ड्रेस पहनी है।

सामने में सोयाबीन का पैकेट टंगा हुआ है बर्तन धोने वाली जाली है।

वहां पर बहोत सारी रेड कलर की कुर्सियां लगाई हुई है।

है जिसमें आधा हिस्सा में कमल की पत्तियां उगी हुई दिख रही है।

उसमें कुछ खाने पीने की चीज रखी हुई है उसके ऊपर एक गोल सा लाइट लगा हुआ है।

एक रूम में रॉयल एवेंजर बाइक लगाई हुई है जिसमें तीन का आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है ।

उसके आगे में लोहे की रेलिंग बनाई हुई है।

मॉल है मॉल में सभी दुकानें खुली हुई हैं।

पेड़ पौधे भी हैं सामने में भी एक पेड़ है।

ये कॉफी स्टोर का बैनर लगा हुआ--

एक पूरी दिखाई दे रही है दो आधी दिखाई दे रही है उसके पीछे छोटे-छोटे पे पौधे लगाए हुए हैं।

वहां पर बहोत सारी बाइक भी लगी हुई है पेड़ भी है बाउंड्री भी वहां पर किया हुआ है।

ये मस्जिद है मस्जिद के अंदर सात कुर्सियां लगी हुई है।

बहुत सारे लोग वहां पर हैं।

ऊपर इस साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है झारखंड राज्य दंत का।

दो आदमी खाना बना रहे हैं एक पानी का टैंकर है।